आसपास भी गंदगी हो रखी है किसी ने सफाई नहीं करी यहाँ पर बहुत टाइम से और ऐसा लगता है जैसे कि बंद हो चुकी है ।

ये एक दिन का लिया गया फोटो है। जहां पर फसल बो बोई गई है और --

और बोहोत अच्छी तरह से इसे संभाल के रखा गया है और ये बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होते हैं।